यह बोहोत ही सुन्दर दृश्य लग रहा दोनों साइड --

मंदिर के गेट के ऊपर गणेश बाबा की मूर्तियां लगी हुई है। मंदिर बोहोत ही सुन्दर लग रहा। मंदिर के गुम्बज पर एक बॉक्स भी लगाया गया है। नीचे --

अस्टेज पर लोग अपनी कला का परदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

का लुप्त उठाते हुए नजर आ रहें हैं।

यहाँ पर कुछ लोग फूल बेचते हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर पीले लाल और बोहोत से कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं |

कुछ हरे-भरे पौधे और कुछ सूखे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं |